जो पार्क के बीच में बनी हुई है।

एक गाडी दिखाई दे रही है।

रात का समय दिखाई दे रहा है।

आसमान में चार पंछी दिखाई दे रहे है।

उसके पीछे एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

झूले का रंग पीला दिखाई दे रहा है।

लोहे से बना हुआ एक हरा और सफेद रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे एक गडवी लगी हुई है।

जिसमें हरियाना रोडवेज की छह बसें दिखाई दे रहीं हैं।